दृश्य गंगा जी का है इसमें एक नाव है।

इसके आगे में एक ठेला पार हो रहा है।

बाइक है। बाइक में एक लड़का बैठा है। जो रेड कलर का शर्ट पहना।

और इसमें बहुत सारे लाइन कतार में लगे हुए हैं।

यह दृश पुल बनाने का है इसमें एक इंजीनियर --

बगल में बैठने के लिए तीन कुर्सी बना हुआ है।

दृश्य लग रहा है किसी क्लास रूम का है।

व्हाइट बोर्ड हैदो माइक हैऔर ब्लू कलर का पेंट नीचे मारकर एक अलमारी हैअलमारी में कुछ लगल दीवार मे एक ब्लैक कलर का कुछ दिख रहा है।

जो ग्रीन कलर के हैं उसके बगल में एक रोड गया है।

और इसमें एक जेंट्स टोकरी ले के खड़ा है।

यहां पे जेरॉक्स मशीन ब्लैक कालार का हे।

ये दृश्य कोई कैंटीन का है इसके आगे जो रोड बना है।

ई कोई गाड़ी शॉप हैं यहां गाड़ी सर्विस होता हैं।

उसके आगे मे एक घर दिख रहा है जो अल्बेस्टर का है।

बगल में हरा कलर का घास है।